यह एक मैदान की फोटो है मैदान के आस-पास हरी-हरी झाड़ियां लगी हुई दिख रही है एवम् बड़े-बड़े पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक सुंदर सा नजारा है आस-पास हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है कुछ झाड़ियां सुख चुकी है एवं कुछ झाड़ियां अब अभी भी हरी-हरी दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर कुछ दो ब दो तीन बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और ऊपर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है सामने एक टावर है जिस पर लाइट लगी हुई है।